यह जहाज रेड और ब्लू कलर का हैं।

यह पिच्चर में एक बाउंड्री है यह बाउंड्री में छोटे - छोटे मुर्तिया रखी हुई है यह बाउंड्री के बगल में हरे - भरे पेड़ पौधे और घास भी है।

यह पिक्चर एक बास्केट बॉल कोर्ट का हैं यह बास्केट बॉल कोर्ट पर कुछ बच्चे बास्केट बाल खेल रहे हैं।

यहाँ बहोत सारे हरे-भरे पेड़ है।

ये पिक्चर एक परियोजना अधिकारी भवन की बाहर का है यह भवन की दीवारे येलो कलर की है और यहाँ खिड़की और दरवाज़े है।